यह एक होटल है यहाँ पर खाना खाने के लिए आते है ये बहुत अच्छा सजाए है इसको--

यह एक स्कूल है ये बहोत अच्छा है ये बहुत बड़ा है यहाँ पर गमले है बहोत अच्छा दिख रहा है अच्छा कलर है।

यह एक होटल है यहाँ तरह-तरह के खाने है और इसमें बहुत सारे लोग भी बैठे है और बोहोत ही अच्छा दिख रहा है यहाँ पर पास मे एक कार है घर भी है लाइट्स है।

यह एक दूकान है यह म यहाँ पर गाड़ी खड़े है ये बहोत ही बड़ा है और य यहाँ आसपास बहुत सारे गमले भी है।

यह एक अच्छा बहुत अच्छा जगह है यहाँ पर मूर्ति भी है और यहाँ घास-फूस है और लाइट भी है पेड़-पौधे भी है।

आसपास में पेड़-पौधे भी लगे हुए है वे बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहे--

स्विमिंग पूल है यहाँ पर बोहत बड़ा स्विमिंग पूल है यहाँ पर घर भी है आस पास मैं पेड़ पोधे है

यह एक कार्यालय है जो की बहोत अच्छा है यहाँ पर कार बहोत सारी गाड़ियां भी खड़े है यहाँ पर पेड़-पौधे आसपास मे और अच्छा है बहोत ही--

यह बहुत ही अच्छा जगह है यहाँ पर यह बहुत ही अच्छा है ये बहुत ही अच्छा दिख रहा है घास-फुस गांव है यहाँ पर घर है अती अच्छा है।

एक कुल्फी आइस क्रीम की दुकान है यहाँ पर आइस क्रीम खाने के लिए आते है ये गाड़ी जैस गाड़ी में है और बहुत ही सुंदर दिख रहा है यहाँ पर--

यह महादेव जी का मंदिर है जो कि बहोत ही अच्छा दिख रहा है कलरफुल भी है और यहाँ पर पेड़ है और बहोत सी चीजे है।